इसमें ढेर सारे पेड़-पौधे हरी घास लगी हुई है कॉलेज का रंग सफ़ेद रंग से रंगा गया है।

इस चित्र में बडा हॉल नजर आ रहा है हॉल में ढेर सारे स्टूडेंट बैठे हुए है सामने कि ओर सफेद बोर्ड नजर आ रहा है बोर्ड के पास एक टीचर स्टूडेंट को कुछ लिखवा रही है।

आसपास दिये सारे बडे बडे पेड पौधे दिख रहे है।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

चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं पेट्रोल पंप ढेर सारी लाइटे लगाई गई हैं रोशनी के लिए।

ढेर सारी बिल्डिंग है बिल्डिंगो को रंग सफ़ेद रंग का दिखा रहा है उपर की ओर नीला खुला आसमान दिख रहा है।